ये एक सब्जी की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारी हर तरह की सब्जी मिलती है और यहाँ पर एक व्यक्ति सब्जी खरीद रहा है और फल फ्रूट भी यहाँ मिलते है।

यह एक गांव है और यहाँ पर एक पेड़ लगा है बहोत विशाल पेड़ है।

ये एक जिम और यहां पर जिम करने के लिए और एक्सरसाइज करने की वस्तुए रखी हुई है।